यहाँ कुछ काम चल रहा है। यहाँ तीन लोग हैं । यह बैठे हुए हैं। एक ढेर भी लगा हुआ है।

यहाँ झूला भी है। मिक्की माउस झूला जिसको कहते हैं बहोत ही अच्छा झूला है यहाँ पर।

बहुत ही सुंदर एक्साइज हो रही है । यहाँ पर यहाँ काफी लड़के एक्साइज कर रहे हैं बोहत ही सुंदर है। यहाँ--